एक बेड है उसके ऊपर कुछ चादर वगैरह है कुर्सी है मेज है।

और यूथ के बारे में है कुछ पब्लिक है इसमें बहुत सारे लोग और लाइन लगाए हुए हैं।

कुछ बच्चे हैं कुछ बाइक गाड़ी वगैरह रखा हुआ है कुछ घर भी है।

कोई भारतीय संस्कृति का कोई डांस हो रही।

यह किसी राशिएल जंगल बंगल का कुछ ऐसा सीन दिख रहा है ।